ये देखिए आप ये एक फार्म है मुर्गी फार्म एक तरफ है बहोत सारे मुर्गे और एक तरफ है मुर्गिए ।

ये एक पानी नदी मे बुगले तैर रहे है वो डक्कस तैर रही है और इस इस पानी का कलर ब्लैक एण्ड व्हाइट है।

एक शादी हॉल है जिसमें बहुत सारे लोग आए हैं और इसमें बहुत सारी लाइट है और इसमें खूब सारे सोफे --